पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ पर रोड भी बने हुए हैं।

यह एक नदी है नदी में एक नाव दिख रही है।

इस रूम में टेबल गुब्बारे भी दिखाई दे रहा है और लाइट बनती हुई दिखा --